ये एक कॉलेज है और कॉलेज में जो है कॉलेज में तीन गाड़ियां लगी हुई है ये गाड़ियां जो है कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उन --